वैसे ही यहाँ पर दिखाया गया है कि सभी बच्‍चे एक साथ कैसे --

अच्‍छा लगने लगा है और वो रेस्‍टोंरेंट में जाकर इन्‍हें बड़े शौक से खााते हैं।

वैसे तो दुर्गा के नौ रूप होते है जिसमें सबसे प्रचंड रूप --

इसके बाद उन्‍होंने बहोत से राक्षसों का --

सि या राम सीता की झांकी हो या --

अपने नहाने के लिए भी करते हैं।

आईस्‍क्रीम तो सबकी फेवरेट होती ही है।

सपना होता है कि काश वो भी स्‍पाइडर मेन होते --

लड़किया इनको पहन बहुत शौक से पहनती है और जो इन्हें --

स्‍कूल में बच्‍चों की अलग-अलग प्रतियोगिताएं होनी चाहिए जिनसे उनका मानसिक या बौ --

आजकल तो अब ठंडियाँ भी --

खड़ा हो जाता है और उत्‍सुक रहता है कि कब उसकी दुल्‍हन उसके पास आए और वो --

लाइब्रेरी में सभी बच्‍चे पढ़ने के लिए जाते हैं और --

मेले का आनंद सभी लोग बहोत --